जैसा की चित्र में बहुत सारे प्लास्टिक के बंडल दिखाई दे रहे हैं| यह कभर के काम में आता है तथा प्लास्टिक का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक उपयोग है| हालांकि यह पर्यावरण के लिए--

जो की बहुत ही शौखो से बनाया गया है | यह द्वार की खासियत है जो अंदर जाने पर बहुत शांति महसूस होता--

सुप्रसिद्ध चिद्र में भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा है जिसे की बहुत ही अद्वितीय तरीके से सजाया गया है| यह प्रकाश--

वह दिखाई दे रहा है साथ ही मकान के बगल में दो-तीन लोग खड़े होकर कुछ बात कर रहे है इसके साथ ही मकान और सड़क के बीच में सुन्दर का एक फूल का एक सुन्दर पौधा लगा--

इसमें भारतीय इतिहास के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की आदमकत प्रतिमा लगी हुई है तथा उस पर संगमरमर लगे हुए हैं| वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे।